यह पिक्चर एक रूम की है यहां पर एक डबल बेड --

यहां पर आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं बैठने के लिए --

टेबल के पास कुर्सियां लगी हुई हैं।

लगे वे हैं ऊपर गमले में कुछ पौधे टंगे वे हैं।

साइड में सिटियां जा रही--

पेड़ लगे हुए हैं उप साइड में सीढ़िया बनी हुई है एक साइड में मकान बना हुआ --

एक बा एक बोट समुद्र में और खड़ी हुई है इसके सामने बहुत सारे घर बने हुए हैं।

आस पास में बहोत सारे फूल लगे हुए हैं बहोत सारे पेड़ लगे हुए --

यह पिक्चर एक पुल की है इसमें एक साइड बत्तख --

एक आदमी अपनी बाइक मे पेट्रोल डलवा रहा है।

इसमें बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं बच्चों के झूलने के लिए --